इस इमेज में एक बस का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा हैं उस बस में हिंदी के शब्दों में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा हैं यहा पर एक सड़क नजर आ रही हैं यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर पानी के ऊपर कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर पानी में ईटे पड़ी हुई नजर आ रही है। यहां पर आसमान दिखाई दे रहा है।

यहाँं पर एक स्त्री कुर्सी के उपर बैठी हुई नजर आ रही है यहाँं पर कुछ स्त्रीयां नजर आ रही है।